ये एक बैंक है जो संस्था है जो व्यक्तियाँ अपना पैसा निकलते है और डालते भी है और कुछ व्यक्तियाँ भी है बैंक हमेशा खुला रहता हैं।

यह एक शासकीय आयुर्वैदिक संस्था है जहाँ दवाई मिलती है व्यक्तियों को संस्था सरकारी यह एक आयुर्वैदिक ग्राम अम्बिकापुर जिला सरगुजा पड़ता है जिसेकी--